और यह सब देखने में बड़ा ही सुंदर है इस मैदान के चारों ओर बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं ।

यह एक जैसे बना हुआ है जिसमे बहोत सारे लोग बैठे हुए है।

यह अभी एकदम खाली है यहाँ एक भी लोग नहीं आये है और ये बहुत ही जगह साफ़ है।

एक रेलवे प्लेटफार्म है यहाँ पे ट्रैन आकर रूकती हैं यहाँ तीन-चार पटरियां बनाई गई हैं इन पटरियों पे तीन-चार ट्रेनें एक साथ नहीं आती है।